फोटो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है एक बड़ी सी टेबल दिखाई दे रही है कुर्सियां भी दिखाई दे रही है कुर्सियों का रंग सफेद दिखाई दे रहा है ओर यहाँ पर लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है एक फोटो भी लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक होटल दिखाई दे रही है हॉटेल के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है बोर्ड लाल रंग का दिखाई दे रहा है हॉटेल कल्पना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है चेक श--

मशीन दिखाई दे रही है एक टॉवेल दिखाई दे रहा है एक पलंग दिखाई देरा है एक आदमी दिखाई दे रही है जीच मे चश्मा लगाया हुआ है उसने नीले रंगकी शर्ट --